यहां पर एक ऑफिस सा है।

कुछ सामने तूफान पंखे रखे हुए हैं।

और एक कमरे के ऊपर गेट के दो छेद हो रहे हैं।

उसमे से एक दुकान खुली हुई है उसके ऊपर एक रस्सी टंगी हुई है कुछ पत्ते लग रहे है।

सामने बहोत सारे पेड़ पौधे लग रहे हैं।

कुछ इस तरह से पानी का कलर हरा है।

और एक हरी टीन दिख रही है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है सामने बहुत सारी बिल्डिंगे है।

बस का दरवाज़ा खुला हुआ है।

सफेद कलर के लाल कलर के ऊपर लाइटें जल रही हैं और एक पंखा लगा हुआ है।

और कुछ कुर्सियां इधर रखी हैं और एक आधुनिक सिंक है।

ऊपर एक दुकान है जिसपे का काले कलर का कांच लगा हुआ है।

और कुछ पत्थरे पड़े हुए हैं सामने बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

और बहुत सारी कुर्स धरी हुई है लाल कलर की संत्री कलर की सफेद रंग की।